दूर पे भारी बादलों के बीच पहाड़ी दृश्य है।

सिंपल ग्रे कलर की है नीचे ब्लैक और गोल्डन कलर का बॉर्डर दिया गया है।

बूथ के अंदर कुछ लोग लाइन में है।

इस डोर के बीच में एक व्हाइट कॉरिडोर है और दोनों तरफ वुडन बुक सेल्फ लगे हुए हैं।

बोर्ड के ऊपर एक हरा रंग का लोगो बना हुआ है जो व्हीट ईयर का चिन्ह है।

तस्वीर के बैकग्राउंड में एक बड़ा पहाड़ है जो ग्रीनरी से कभर है एक बिल्डिंग दिख रही है।

बिल्डिंग के सामने एक और बिजली का पोल दिख रही है।

बेगनी कलर का प्लास्टिक की बकेट टेबल के नीचे रखा है।

बीच में एक ओपन ग्राउंड है जिसमें दो कार सफेद और सिल्वर रंग की खड़ी है।

जमीन पर हरा कार्पेट दिख रहा है।

दीवार का रंग सफेद है और पीछे तीन विंडोज दिख रही है।

पीछे स्टेशन की बिल्डिंग दिख रही है जो वाइट और रेड रूफ वाली है।

जिसमें छोटे छोटे घरों की बस्ती बनी हुई है।

ग्राउंड की सरफेस मिट्टी वाली है।

पिछे बहुत बड़े पेड़ हैं जो ग्राउंड को घेर रहा है।

ऊपर के स्लैब पर रजिस्टर नोटबुक्स और फाइल रखे हुए हैं।

राइट कॉर्नर में एक काउंटर एरिया दिख रहा है।

काफी सारे पेड़ और पौधे हैं।

ऊपर का स्ट्रक्चर लाइट ब्राउन है तो नीचे का दीवार सफेद रंग का है जिसका रंग बीच बीच में काला भी पड़ गया है।

दो गाड़ियां शोरूम के सामने पार्क है।

इमेज के राइट तरफ वायर दिखाई दे रही है।

दोनों तरफ घना पौधा और पेड़ लगा हुआ है।

मुझे दूर तक पहाड़ी की सीढ़ी दिख रही है।